इधर पे एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है उसके ऊपर बहुत सारे पेड़-उड़ गए है उसके आगे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

एक ब्राउन और ग्रीन कलर में है एक फूल पिंक कलर में है उसके पीछे एक पक्ष भी नजर आ रही है देखने के लिए सफेद रंग में है।

और एक बोल रखा हुआ है उसके ऊपर साईं डिपटेंशन शॉप बोल के लिखा हुआ है इधर पे कुछ भी रखे हुए हैं।

इधर के बहुत सरे खिड़की भी दिखाई दे रही है | और इसकी अन्दर जाने के बहुत सारि सीढ़ी बी दिखाई दे रही हे| मिटटी बी नज़र आ रही है और ए सि बी दिखाई देरही हे |